ये कागज के बने हुए है बहोत खुबसूरती से इसको बनाया गया है और कई तरीके के है।

सामने सोफे हैं जिसपे दो जेंट्स पर्सन बैठे हुए हैं।

नाइस बैकग्राउंड यहाँ पे साइड साइड में पेड़ काफी बड़े-बड़े है और नीचे ज़मीन पे हरियालि भी है।

इ बिल्डिंग है और बिल्डिंग कई फ्लोर का है और बिल्डिंग के सामने एक काफी बड़ा सा पेड़ है।

इ किराने का दुकान है जहाँ पे ढेर सारे खाने-पीने की चीज़े रखी गई है। जैसे दलिया है शैम्पू है तेल है।

टूथपेस्ट है और बिस्कुट है काफी चीज़े ऐसे रखी गई है और--

काफी हैवी और लम्बी ब्रिज भी बनी हुई है।

हैलो फ्रेंड्स ये पार्किंग ग्राउंड है जहाँ पे फोर व्हीलर बाइक स्कूटी वगैरह पार्क किए गए हैं।

यहाँ बिल्डिंग्स भी हैं स्कूल भी हैं जहाँ से लोग भी दिखाई दे रहे हैं।

काफी लोग भी दिखाई दे रहे हैं लाइटिंग भी बहुत खूबसूरत है ये बैकग्राउंड काफी लम्बा-चौड़ा दिखाई दे रहा है।

यहाँ एक ट्रक खड़ी है एक बाइक भी खड़ी है बगल में घर बने हुए है।